और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर से मंदिर में लोग बराबर बैठ के भगवान को याद करते हैं।

और जिनकी कई चीजें हैं स्कूल भी है। इनका एक और भी अ महिंद्रा का शो-रूम भी है ब गाड़ी वाड़ी का। ये काफ़ी सम्पन परिवार से हैं।

फल मंडी है। यहाँ फल बिक रहा है। अंगूर सेब संतरा सब प्रकार के फल यहाँ बिकते हैं और काफी अच्छा है।

जंगल नहीं हैं लेकिन यहाँ पेड़-पौधा के पत्ते बहुत गिरे हुए हैं।

यह एक मंदिर है और ये हमको लगता है पंचमुखी मंदिर के पीछे वाला सीन अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा मंदिर है।

और काफी अच्छा है बहुत बढ़िया है। बहुत सुंदर से इसको बनाया गया है। काफी लोग यहाँ भीड़ रहता है।

ये आज कल हर चीज का टेक्निकली हो गया है। कम समय में अच्छा काम होता है।